इस ट्यूटोरियल में आप का स्वागत है जिसमें आपको लेटेक की वितरण मिक्टेक को अपडेट यानि नवीनतम करने और लापता यानि मिसिंग पैकेज़ को शामिल करने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी
डेस्कटॉप पर आप टेक्निक सेंटर को देख सकतें हैं
अगर आप को टेक्निक सेंटर को स्थापित करना नहीं आता तो आप लेटेक को विंड़ोज़ पर स्थापित करने और चलाने की स्पोकन ट्यूटोरियल को देखें
उसमें बताया गया है कि विंड़ोज़ पर मिक्टेक की स्थापना कैसे की जाती है
अब तक बनाए गए स्पोकन ट्यूटोरियल्स में ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने का समय बिलकुल वही समय है जो मैंने कंप्यूटर पर बिताई है
लेकिन इस ट्यूटोरियल में काफ़ी सारे प्रदर्शन हैं जिनके लिए इन्टरनेट का उपयोग होगा
कुछ डाउनलोड्स के लिए ज्यादा समय लग सकता है ख़ास कर अगर बैंडविदत कम हो
इस लिए मैं रेकॉर्डिंग करते समय बिच बिच में पॉज़ करूंगी
आप को एक फाइल दिखाई देगी जो बीमर क्लास का उपयोग कर रही है
आप उसे यहाँ देख सकते हैं
अगर आप को बीमर की जानकारी नहीं है तो आप बीमर पर बनाई गयी एक स्पोकेन ट्यूटोरियल को शायद देखना चाहेंगें
अब मैं CTRL और फ़7 कीज़केस को साथ में दबाकर इस फाइल का संचय करूँगी
मिक्टेक शिकायत करता है कि बिमर मौजूद नहीं है
अब मैं आप को समझाती हूँ कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाएं
सबसे पहले मिक्टेक को नवीनतम यानि अपडेट करें
इसे आप दो तरीकों में कर सकतें हैं जैसे कि मैं अब बताऊँगी
स्टार्ट को दबायें
प्रोग्राम्स में जाएं
मिक्टेक में दो विकल्प हैं - एक है सीधा अपडेट और दुसरा है पैकेज़ रिपोज़िट्रि द्वारा अपडेट
आप अपडेट मैं जाकर कोई दुरस्त यानि रिमोट पैकेज़ रिपोज़िट्रि को चुन सकते हो
मैं साधारणतः इनरिया का प्रयोग करती हूँ
मैंने पिछली बार ऐसा किया था इस लिए वह अब एक विकल्प के रूप में दिखाई देता है
परंतु आरम्भ में आप को केवल यही दो बटन दिखाई देंगें
सबसे निकट की पैकेज़ रिपोज़िट्रि का प्रयोग करें और दुसरा यह है कि मैं कोई रिमोट पैकेज़ रिपोज़िट्रि का प्रयोग करूँ
अगर हम कोशीश करें तो पहले हमें कनेक्शन सेटिंगज़ को स्थापित करना होगा
कनेक्शन सेटिंगज को पहले स्थापित करना आवश्यक है
इसके लिए हम प्रोक्सी सरवर का प्रयोग करेंगें
ऐड़्रेस यानि पता
पोर्ट यानि द्वार
इसे ऑतेंटिकेट यानि प्रमाणित करना है
इस लिए मैं यहाँ क्लिक करती हूँ
अब अगर मैं इसे चुनती हूँ तब यह यहाँ आएगा और नाम और पासवर्ड़ पूछेगा
तो मैं इस जानकारी को दर्ज़ करती हूँ
अब उदाहरण के लिए मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से यह जानकारी दे सकती हूँ और इसका चुनाव हो गया है
अब इसका चुनाव करती हूँ
अब अपडेट यानि नवीनतम क्रिया में कुछ समय लगेगा क्योंकि उसे पूरे पैकेज़ की जानकारी को डाउनलोड़ करना है
इस लिए यहाँ मैं रेकॉर्डिंग को पॉज़ करती हूँ
करीब पाँच मिनट के बाद यह वापस आता है और कहता है कि अबी कोई भी अपडेट्स उपलब्द नहीं हैं कयोंकि मैंने हाल ही में अपडेट किया था
अन्यतः यह ऐसा करता - यह पैकेज़ की एक सूची देता और पैकेज़ को जांछने की सीफ़ारिश करता
जब मैंने यह पहली बार किया था तब मुझे पैकेज़ की एक सूची मिली थी जिनमें सबी पैकेज़ का चुनाव किया गया था और मुझे सिर्फ सारा अपडेट यानि नवीनतम करना था
आपको यह अपडेट प्रक्रिया हर दिन करने की ज़रुरत नहीं है
कभी कबार आप यह करें तो काफ़ी है
टीक है तो पीछे जातें हैं
एक और बार पीछे जातें हैं
अब बेशक इसे एक सी ड़ी या ड़ीवीड़ी वीतरण द्वारा नवीनतम करना संभव है या फ़िर आपके निकट के स्थानिय पैकेज़ रिपोज़िट्रि से
आप वह भी कर सकतें हैं
तो अब मैं इसे रद्ध करती हूँ
हमने अबी तक बीमर को जोड़ने की प्रक्रिया बताई नहीं है
हमने अपडेट द्वारा अपने मिक्टेक वितरण को नवीनतम बनाया है
मैंने आपसे पहले कहा था कि इसे करने के दो तारीकें हैं
अब मैं आपको दुसरा तारीका समझाती हूँ
आईए प्रोग्राम्स में चलें
मिक्टेक
उसमें ब्राउज़ पैकेज़
इसे करने के लिए भी कुछ वक्त लगता है - लोड़ करने में कुछ सेकेंड़्स लगतें हैं
यह एक सूची देता है जो सारे पैकेज़ की जानकारी देता है और वो कब पैकेज़ की गई थी यह दिखाता है
यह पत्र भाग काफ़ी महत्त्वपूर्ण है
यह बताता है कि यह पैकेज़ आप के सिस्टम में उपलब्द है की नहीं
आइए नीचे जातें हैं और देखतें हैं कि बीमर है या नहीं
आप यहाँ देख सकतें हैं बीमर - यह पत्र भाग रिक्त है - मतलब कि बीमर नहीं है
आगे बढ़ने से पहले हम टास्क में जाएंगे और अपडेट वीज़ार्ड़ में - यहाँ हम समान पन्ने पाएंगे जैसे हमने पहले देखा था
आप भी ये कर सकते हो आप कनेक्शन को सेट कर सकते हो
सुनिश्चित करें कि आपका कनेक्शन प्रोक्सी सब कुछ टीक है और उसके बाद ही पैकेज़ को चुनकर आगे बढ़ें
अब क्यूंकि हम अपडेट प्रक्रिया नहीं कर रहे इसलिए हम इसका पालन नहीं करेंगे
ध्यान रहे की संभवता कुछ रिमोट साइट्स शायद काम न कर रहे हों
आम तौर पर आपको कईं बार कोशीश करनी पड़ेगी जब तक वह काम कर जाए और जब तक आप से यह आसानी से हो जाएँ
जब आप इसे आसानी से कर पायें तब आप उसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेंगे
टीक है तो अब इसे रद्द करती हूँ
अब हमे यह करना है हम ऐसा चाहते है - इसे चुन लेती हूँ
इसे चुनते ही यह सक्रिय्य हो गया
अब अगर मैं इसे स्थापित करू तो यह कहता है कि यह स्थापना नवीनतम हो जायेगा और एक पैकेज़ स्थापित हो जायेगा
आईये यह करें
टीक है यह आ जाता है और कहता है कि प्रोक्सी ऑथेंटिकेशन यानि प्रोक्सी प्रमाणित करने की ज़रूरत है
आईये इसे बंद करते हैं
यहाँ यह करना है - मुझे लगता है कि यह रिफ्रेश हो रहा है और कुछ समय लगेगा - हम ऐसा करते हैं - हम इस रिपोज़िट्रि में जातें हैं और पैकेज़ रिपोज़िट्रि को बदलते हैं
हमे यह फिर एक बार करना होगा - कनेक्शन सेटिंगज़ - यह यहाँ पहले से है
और इसे पासवर्ड भी चाहिए
तो चलो दे देतें हैं
टीक है - अब इनरिया का चुनाव हो चूका है
और मैं इसे समाप्त करती हूँ
कुछ मिन्यूट के बाद मुझे यह एरर मेसेज दिखाई देता है कि कुछ तो अपडेट नहीं हो पाया लेकिन कोई बात नहीं
अब हम ऐसा करेंगे हम इसे स्थापित करने की कोशीश करेंगे
आईये बिमर में चलें - यह यहाँ है
आईये इसे चुनते हैं
इसे दबाएँ
तो अब यह स्थापित हो रहा है
कुछ मिन्यूट के बाद यह बिमर को डाउनलोड कर देता है
तो अब इसे बंद कर देतें हैं
चलिए इसे सुनिश्चित करते हैं - उदाहरण के लिए यह इस पन्ने को नवीनतम कर रहा है
उसे नवीनतम हो जाने दो और इस बीच हम यहाँ आ जाते हैं और CTRL और फ़7 के साथ इसका संचय करतें हैं
टीक है - मुझे टीक से याद नहीं कि पिछली बार क्या किया था
तो मुझे लगता है कि इसे रद्द कर देना चाहिए
तो अब इस हाल ही में किये गए संचालन का परिणाम यह रहा इसे स्पष्ट करने के लिए मैं इसे बंद करती हूँ और CTRL और फ़7 करती हूँ
पहले हमे यह शिकायत मिली थी कि बिमर मौजूद नहीं है
अब यह कहता है कि कुछ और मौजूद नहीं है
अब यह बिमर की शिकायत नहीं करता
आईये निचे जातें हैं और बिमर को खोजतें हैं
निचे बिमर को खोजतें हैं और आप देख सकतें हैं कि यह पांच नवम्बर को स्थापित हुआ है
टीक है - अब हम ऐसा करेंगे - हम इस शिकायत को देखते हैं
वस्थाव मैं यह स्थापित करने के लिए एक विकल्प देता है - तो हमारे पास यह करने के दो तरीकें हैं
एक है कि हम यही पर उसे स्थापित करें और दुसरा है कि हम इसके माध्यम से जाएं
आईये देखें कि ऐसा करने से क्या होगा
वह प्रमाणित करने के लिए कहेगा
पिछले तरीके से विपरीत यानि कि हमने ऐसे किये तब वह कॉपीइंग वगेरा दिखा रहा था लेकिन अब सब कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है
तो थोडा इंतज़ार करतें हैं
अब वह सब डाउनलोड हो चुका है और अब यह कहता है कि xcolorस्टाई मौजूद नहीं है
क्या उसकी स्थापना होनी चाहिए
हम उसे आगे जाने की आज्ञा देंगे और यह बैकग्राउंड में स्थापित हो रहा है
टीक है - अब यह कहता है कि ट्रांसलेटर यानि अनुवादक मौजूद नहीं है
आईये उसे भी स्थापित कर देतें हैं
अब काफी समय के बाद भी कुछ प्रकट नहीं हो रहा है
आईये यहाँ चलतें हैं और देखते हैं कि वर्तामान स्थिती क्या है
आईये इसे पुन आरम्भ करतें हैं
और सुनिश्चित करतें हैं कि हमने जो पैकेज़ स्थापित करने की कोशिश की थी वह स्थापित हुए कि नहीं
हम देख सकतें हैं कि यहाँ बिमर मौजूद है जैसे पहले देखा गया था
अब हमे दूसरी चीज़ें देखनी हैं यानि - पीजीएफकोड क्सकलर और translator
आप देख सकतें हैं कि पीजीएफ आज स्थापित हुआ है - अब हम ट्रांसलेटर को देखते हैं और ट्रांसलेटर भी स्थापित हुआ है
अगला क्सकलर है और क्सकलर भी स्थापित हो गया है
लगता है कि सारे पैकेज़ अब स्थापित हो गएँ हैं
अब संचय करतें हैं
CTRL और F7
लगता है यह काम कर रहा है
आईये ऐसा करतें हैं - इसे बंद करतें हैं
हमे अब यह नहीं चाहिए
मैं उस फाइल को खोलती हूँ जिसका निर्माण मैंने किया था
वह लेटेक फिल्स मैं है
और फाइल का नाम मिक्टेक अपडेट डॉट टेक miktexupdateटेक्स है
तो मैं मिक्टेक अपडेट डॉट पीडीऍफ़miktexupdateपीडीएफ को देख रही हूँ
आईये इसे सुमात्रा के द्वारा खोलतें हैं
टीक है - हम यहाँ हैं
मैं इसे थोडा सा छोटा कर देती हूँ
इसे यहाँ पर ले जातीं हूँ
चलिए देखतें हैं कि इसे बड़ा करने से क्या होगा
मैं इसे बंद कर देती हूँ
बेशक आप तारिख देख सकते है - चार नवम्बर - क्यूंकि मैं इसे कल बनाने की कोशिश कर रही थी और वह कल काम नहीं कर रहा था
तो अब मैं ऐसा करती हूँ - मैं इसे पांच मैं बदल देती हूँ
सुरक्षित करती हूँ और CTRL F7
टीक है- अब यह अपडेट हो गया है
आईये निचे चलते हैं
यहाँ पर इस स्पोकेन ट्यूटोरियल के लिए कृतज्ञता व्यक्त की गयी है
इस स्पोकेन ट्यूटोरियल को निर्माण करने के लिए फंड आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से प्राप्त हुआ है
इस मिशन की वेबसाइट साक्षात डोट ऐ सी डोट इनsakshaathacइन है
कृपया अपनी राइ कन्नन एट आई आई टी बी डोट ऐ सी डोट इन kannaniitbacइन पर भेजें
स्पोकेन ट्यूटोरियल गतिविधियों को भविष्य में स्पोकेन ट्यूटोरियल डोट ओ आर जीspoken tutorialओआरजी से समन्वय किया जाएगा
मैं यहाँ एक बात कहेना चाहूँगी कि कुछ अपडेटस कम समय मैं हो गएँ और कुछ अपडेटस के लिए ज्यादा वक़्त लग गया
शायद कुछ मिनट लग गए लेकिन आरम्भ के अपडेट के लिए काफी वक़्त लग सकता है
उदाहरण के लिए यहाँ मैं मिक्टेक 27 का प्रयोग कर रही हूँ और अगर मैं इसे अपडेट करना चाहूँ तब पहली बार इसके लिए करीब बीस से तीस मिनट लग सकता है
अपडेट के लिए कितना वक़्त लगेगा यह काफी हद तक मिक्टेक के वर्जन पर निर्भर है
आरम्भ मैं इस में कुछ वक़्त और प्रयास लग सकता है
उसके बाद यदि आपके पास उचित नेटवर्क हों तो व्यक्तिगत पैकेज़ के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा
इसी के सात मैं इस ट्यूटोरियल को समाप्त करती हूँ
इसमें शामिल होने के लिए धन्यवाद
आई आई टी बंबई की तरफ से मैं नैंसी आप से विदा लेती हूँ धन्यवाद